तस्वीर में मुझे एक टेबल दिखाई दे रही है।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

तस्वीर में मुझे दो बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे--